और ऊपर में ग्रीन कलर के परदे से अह छत को ढका गया है एवं इस बिल्डिंग में बहुत सारे झालर भी लगाए गए हैं।

एवं यहां पे बहुत सारे जमीन में बैलून भी पड़े हुए हैं एवं यहां पे टाइल्स भी लगाई हुई दिखाई दे रही है।

तथा दीवालो में ए_सी भी दिखाई दे रहा है।

यह एक शादी समारोह का दृश्य है जहां पे इसमें बहुत सारे प्रकार के टेंट लगाए गए हैं।

एवं उस सारे मछलियों को अ शीशे के ट्यूब में रखा गया है तथा उसमें बहुत सारे पानी भी रखे हुए हैं।

एक बिल्डिंग का बाहर का दृश्य है यहां पे एक कुत्ता दिखाई दे रहा है।